वाह! क्या मनमोहक दृश्य है क्या हरियाली है क्या फूल है फूलों से यह जो है गार्डन बागीचा जो है वो भरा पड़ा है कई प्रकार के रंग-बिरंगे फूल हैं जो लाल-लाल पीला--

पीछे ईशा-मसीह का जो है पुतला है और अगल-बगल भी ईशा मासीह का फोटो लगा हुआ है चर्च का फोटो है पूरे परिवार --

यह तो मानो किसी ऑफिस का दृश्य है जहां पे चार पांच छै गेट शायद जहां पे काउंटर लिखा हुआ है और लाल लाल कलर की जो कुर्सियां है वह है जिसपे दो व्यक्ति एक व्यक्ति और एक महिला विराजमान है और सामने --

यह तो किसी गार्डन का पिक लग रहा है जिसमे एक महिला जो है वह गार्डन में फूल पत्तियों को पानी दे रही है और दृश्य बड़ा बढ़िया है। हूं --

यहाँ देखिए सुपर मार्केट जहां पे बहोत सारे प्रकार के प्रोडक्ट मिल रही है साबुन शैम्पू और भी कई बच्चो को खेलने का टॉय भी है और भी बच्चो का ही खेलने का सेक्शन लग रहा है।